बड़े बड़े पहाड़ दिखाई दे रहे हैं एर आसपास में बहुत बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं और पानी भी दिखाई दे रहा है।

एक टेबल भी दिखाई दे रहा है।

बहुत सारी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और पानी वाली टंकी दिखाई दे रही है और--

बॉक्स दिखाई दे रहे हैं एक अलमारी में पड़ा हुआ सामान दिखाई दे रहा है।